कुछ पत्थरे दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है और ग्रे कलर की है।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

यहां पर बहोत सारी खिड़की दिखाई दे रहे है जिसमें लोहे के कुछ लगे हुए हैं जो ब्लैक कलर के हैं।

और एक तस्वीर दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की है जिसमें कुछ बना हुआ है।